पकड़ के खाड़ा है जंगला लगा है गेट है बना नीचे फर्श धराया है।

बगल में एक बैंक है बगल में एक दुकान भी है आगे बहोत सारा गाड़ी खड़ा है एक सफेद कलर का शर्ट पेहेन के खड़ा है और --

अब गेंद दिया और देखे बहुत बचा हैं सफेद सफेद कलर का हाथी पहन का--

देखिए एक ब्लू शर्ट पहन के खड़ा है एक अंकल और इधर एक झोला धराया है।

सी_सी कैमरा भी लगाया है बल्ब लगाया है मोबाइल बहुत सारा लगाया है यह आइडिया का रिचार्ज होता है बिना दे--

कितना पीला आम है देखिये।

देखिए ये होटल में कितना रंग विरंग का मेरे मिठाई है लाल मोहन है रसगुल्ला है इधर नमकीन धारा है --

आई बगल में पेंट धरा है पंखा लगा है और बहुत अंधेरा है अंदर एकदम टट्टी से गिराया और इधर पेंट का डब्बा धराया और इधर छुरा भी धराया।

और बैंक भी है बहुत सारा बहुत सारा घर भी है आगे पोस्टर लगा है गाड़ी और ये गाड़ी

पीला कलर का सलवार पहना है और बगल में पोस्टर में बहुत तरह का चित्र या उगाया है देखिए ये स्कूल का सबचीज बताया हुआ है।

खड़ा एक छोटी बच्ची भी खड़ा है एक गाड़ी छोटा है उ उधर भी लेडीज बहुत खड़ा है और बोल बड़ रहा है देखिये कि --

ये देखिए मच्छरी बाजार हैं। ये देखिए एक औरत मच्छरी बेच रहा है। झींगा मच्छरी और--

बहोत सारा सामान सब है देखिए नीचे पक्का है उपर अलवेस्टर है जल रहा है इधर से बगल से एक गेट है।

तीन चार आदमी खड़ा है और एक बस भी लगा है ट्रक भी उजला कलर का देखिए यह पेंट है ये--

देखिए पानी में नाव चलने वाला तीन सवार है जैकेट पहना है और--